यह एक पानी का तालाब है।

मशीन रखी हुई हैं और यहां तीन पत्तियां तीन पिलर ब्लू कलर से पुते हुए हैं।

और इसमें पंखे च पंखे लगे हुए हैं वो भी वाइट कलर के--

और वे सब फोटोज टैटूज की लगी हुई हैं।

और ये घर टाइप का चादर शेड बना हुआ है ब्लू कलर के त्रिपाल रखे हुए हैं।

यहां महावीर का महावीर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का--

हर एक गोल-गोल वाऊल में वाइट कलर में कोई पौधा है जो कि छोटा-छोटा है।

और बाजू में ब्राउन कलर के टोल्स लगे हुए हैं और उसी के साथ एक बिल्डिंग --